मुझे सामने दुर्गा जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि शायद विसर्जन के लिए जा रही है या फिर दुर्गा जी को ले के आ रहे बिठाने के लिए यहां पे--

या फिर अह किसी जगह की मतलब ये फोटो जो--

मुझे सामने कुछ मछुआरे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने काफी सारी मछलियों को यहां पे रखा हुआ है और ये मछलियों को यहां पे सेल करते हुए नजर आ रहे--

और आधा बनाना बाकी है यहां पे काफी ज्यादा ईट पत्थर वगैरह--

जो है वो काफी शेप और मस्त बना हुआ दिखाई--

ये किसी मंदिर के बाहर की फोटो है यहां पे काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और लोग यहां पे बैठ के--

मुझे सामने एक जगह दिखाई दे रही है यह जो जगह है यहां पर काफी ज्यादा बिल्डिंग वगैरह बनी हुई नजर आ रही है यहाँ--

मुझे सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और ये ठंड का टाइम है इन्होंने सामने जैकेट और--

मुझे सामने एक जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है ये जो जनरल स्टोर है यहां पे काफी ज्यादा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग किस्म का अलग अलग--

और इस क्वांटिटी में यहां पे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है कई ये शायद किसी मॉल की फोटो है या फिर--

मुझे सामने एक कैफे दिखाई दे रहा है जिसका नाम मद्रास कैफे है ये जो मद्रास कैफे है उसके नीचे--

लेकिन इसके ऊपर बोर्डे जो लगा है वो मद्रास कैफे के नाम से है और ये जगह काफी पुरानी सी दिखाई दे रही है।

रूम डेकोरेट करके रखा हुआ होगा और यहां--

हां ये जो मशीन रखी हुई मिक्सी वगैरह यहां पे रखी हुई है लंच बॉक्स वगैरह और यहां पे सब क्रॉकरी का काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है।

भरे घर के पास से एक औरत जाती हुई नजर आ रही है।

बाजू में ग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा है और ये जो जगह दिखाई दे रही है वो भी ऐसा लग रहा है यहां सुनसान काफी ज्यादा एरिया है और--

बड़ा है और ये एरोप्लेन वाइट और रेड कलर का है जो कि यहां पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है और इसमें--

ऊपर में एक पेड़ लगा हुआ है का और ये जो जगह दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है।

सूर्यदय होता हुआ नजर आ रहा है सूर्य अस्त हो रहा है शायद हां ये सूर्य अस्त का टाइम भी है और यहां पे--

दिखाई दे रहा है गा और साइड साइड में घर बने हुए हैं और ये जो ग्राउंड है वो--

मुझे सामने एक होटल या फिर रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है ये काफी बड़ा है और--

शायद ज्वेलरी या फिर कुछ है यहां पे दोस्त शाइनिंग गॉर्जस लिखा हुआ है और यहाँ--

वो इनके घर में रखी बांधी हुई है और--

इसके आगे में एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रहीं है की एक घर मकान दिखाई दे रहा है जो की--

में मशीनें वगैरह रखी हुई है सामने दीवार पे काफी ज्यादा फ्रेम वगैरह टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पे ये जो जिम है।

ये मेडल देते हुए नजर आ रही है कि और यहां पे--

ये सामने एक हॉस्पिटल का जगह दिखाई दे रहा है यहां पर--

उस नदी के किनारे पर है और यहां पे आसमान दिखाई दे रहा है वाइट वाइट कलर का--

दही घी पनीर रसगुल्ला गुलाब जामुन--

मुझे सामने वाटर पार्क दिखाई दे रहा है यहां पे काफी ज्यादा--

मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही हैगी और ये वाटर पार्क काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और यहां पे ये जो--